बहुत ही अच्छे लगते हे गुब्बाड़े अनेक-अनेक तरह के रंगों का ढेर सारे लोग हे बहुत ही अच्छे लगते हे।